यहाँ पर एक बस दिख रही है जिसके अंदर कुछ लोग चढ़ रहे है और कुछ लोग वहाँ पर अंदर बैठे हुए है और यहाँ पर कुछ लोग रोड पे से जा रहे है।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

और यहां पर कुछ ऑरेंज कलर का यहां पर धुए जैसा कुछ उड़ाया जा रहा है और यहां पर व्हाइट का एक कुर्ते पजामे मे लोग डांस कर रहे हैं दो लड़किए साड़ी वगैरा पहन के यहां पर डांस कर रही हैं।

यहाँ पर‌ एक छत का काम दिखाई दे रहा है जो की यहाँ पर सेंटिंग वगेरा डली हुई है यहाँ पर पाइप वगेरा दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत सारे मजदूर वगेरा यहां पर दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक छत डालते हुई दिखाई दे रही है जहां पर बहुत सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे है और यहाँ पर सेंटिंग वगेरा यहाँ पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर कोई एक खड़ा हुआ है और यहाँ पर --

टी-शर्ट वगेरा टंगी हुई है जो की ब्लू और व्हाईट कलर की टंगी हुई है रेड और ब्लू कलर की वो टी-शर्ट यहाँ पे बहोत सारी टी-शर्ट वगेरा हैंगर में टंगी हुई और कुछ टी-शर्ट यहां पर रखी हुई दिखाई दे रही है चड्डे यहां पर दिखाई दे रहे है।